माहौल में हमें एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में बहुत सारी पेड़े लगी है।

इसमें एक खूबसूरत सा बैंक दिखाया जा रहा है बैंक में फेडरल बैंक ए_टी_एम लिखा है।

इसमें एक खूबसूरत सा बुक डिपो दिखाया जा रहा हैं।

और पीछे एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

और कुर्सियों के टाइप्स भी मिलते हैं।

और काफी खूबसूरत सा विशेष भी है।

खरीदारी करते हैं और समान को ले जाते हैं।

और टाइल्स भी लगा हुआ है।

इसमें टोकनियों में काफी टमाटर रखे हुए हैं साइड में एक टोकनी भी रखा हुआ है।

और केक बहुत ही क्रीमी है यह किसी बडे का केक होगा--

यहां कोई रेस्टोरेंट का वह होगा--

और इसमें सपोर्टर भी दिया गया है।

योग आसन सीखाता हुआ दिखाई दे रहा है।